इस इमेज में हमें श्रीनाथ जी का मंदिर दिखाई दे रहा है।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

इस इमेज में देखियेगा यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है और बाहर --

इस इमेज में देखिएगा एक टूटी फूटी कार दिखाई दे रही है जिसकी डिक्की खुली हुई है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक मकान बनने का काम चल रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है जहां पर कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हुए है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर कुल्फी भंडार की दुकाने दिखाई दे रही है नीचे काफी सारे लोग खड़े होकर --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

एक बैंक दिखाई दे रहा है एस_बी_आई ।

अ बोर्ड लगा हुआ है जिस पर मोर का चित्र बना हुआ दिख रहा है और आसपास --

जिसमें दो लोग बैठे हुए है और चप्पू से अपनी नाव को चला रहे हैं और --

इस इमेज में बड़ा सा हॉल दिख रहा है जहां पर नीचे दरी बिछी हुई है और खिड़कियां --

कारें चल रही है बीच में बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है और बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं।

पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ बाइक्स में पेट्रोल डलाते हुए लोग --